लोग यहां पे सेल्फी ले रहे हैं यादगार मोमेंट बनाने के लिए लोग बहोत प्यार से आए हैं।

इनकी जो ट्रेन की प्लेटफॉर्म है वो सीढ़ी से नीचे जाके मिलेगी इन्हें।

यहां एक कच्ची जमीन है यहां पे कंस्ट्रक्शन की काम हो रही हैं यहां पे--

इन लोगों को सामान लेने की जरूरत होगी शायद--

शाम का समय है चारों ओर हरी हरियाली दिख रही है चारों तरफ।

हरे हरे पेड़ से काफी सुंदर लग रहा है और बीच में यह नदी--

केरल अ केरल होटल के सामने लोग खड़े हुए है जहां पे वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट --